यहां पर कई सारे पत्थर बेंच बेंच के जैसे बना के हैं।

अंदर एक मॉल दिखाई दे रहा है और वहां पर कुछ खाने की चीज़ें का काउंटर लगा हुआ है एक व्यक्ति काउंटर पर --

और किताबें दो दो-तीन डब्बों में भी रखी हुई हैं यह दुकान--

उसे देख रहे हैं एक ने सफेद रंग की टीशर्ट पहनी हुई है एक ने नीले रंग की टीशर्ट पहनी हुई।

यहां पर चार बेड्स दिखा सी तरफ चार बेड्स और दाईं तरफ चार बेड्स दिखाई दे रहे हैं और--

मोटरसाइकिल बाइक और झाड़ के पत्तियों भी नजर आ रहे हैं।